'' यहाँ पर एक गुफा है गुफा के अंदर एक आदमी जा रहा है उसने हाँथ में ग्लव्स पहने हुए है और चश्मा लगाए हुए है। और उसने ''''--''''''

यहाँ पर एक घर है और घर के अंदर एक कार खवी हुई है और दरवाजे का कलर ब्लैक है और दीवार का कलर वाइट है और कार का वाइट है।

और जमीन का कलर पिंक है और बाहर एक नाली भी बनी हुई है और अंदर पेल पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ एक जिम हो जिम में जिम का सामान रखा हुआ है और अंदर लाइट लगी हुई है जिम का कलर --

यह एक जिम है। जिम के अंदर जिम का सामान रखा हुआ है और शीशा लगा हुआ और नीचे लकड़ियाँ लगी हुई हैं और लाइट जल रही है और दीवार का कलर ग्रीन है।

बाइक का कलर ब्लैक है और शोरूम के अंदर लाइट जल रही है और वाइट कलर का पेंट हुआ है शोरुम में।

पेड़ भी लगे हुए हैं और आसमान में बादल है। व्हाइट कलर के और सड़क काली है।

यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर की दीवार का रंग गुलाबी है और वहां पर --